और यह देखने में तस्वीर काफी सुंदर और बेहतरीन सी लग रही है।

हेलो दोस्तों जैसे कि आप यह तस्वीर देख रहे हैं यह एक गॉड की तस्वीर है जहाँ पर काफी लोग आते हैं और जाते हैं यहाँ पर अपनी-अपनी मन्नतें मांगते हैं और यहाँ इनकी मन्नताएं भी पूरी हो जाती हैं और यहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं और यह काफी अच्छे तरीके से लग रहा है और यह हमें काफी अच्छा लग रहा है।

जैसे कि आप देख सकते हैं एक फैंसी सूजों की दुकान है और यहाँ एक कोटक बैंक है।

हम इस तस्वीर को बुराई नहीं कर सकते क्योंकि यह देखने मे ही इतनी सुंदर --

यह काफी साफ सुतरा पूल है जिसपे व्हाइट करल हुआ हुआ है और ये देखने में काफी सुंदर लग रहा है और बेहतरीन भी लग रहा है।

ये है काफी देखने में सुंदर और बेहतरीन सा लग रहा है।

और इनमें काफी अच्छे छोटे-छोटे स्पून लगे हुए हैं ये देखने में काफी अच्छा और सुंदर और बेहतरीन सा लग रहा है।

हेलो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यह एक एटीएम के बाहर की तस्वीर है जो काफी अच्छी तस्वीर लग रही है जिसमें कि काफी ज्यादा लोग अपने एटीएम से अपने कैश निकाल रहे हैं।

आप कभी भी अपना पिन किसी कोई नहीं दे क्योंकि यहा पे एक कुछ भी हो सकता है।

जहाँ पर आइसक्रीम और केक भी मिलते हैं।